अपने फॅमिली और बच्चों के साथ आते है कई लोग दोस्तों के साथ आते है यहाँ का द्रश्य काफी अच्छा है यहाँ पर जानवर रहते है ।

यहाँ रोड किनारे स्थित एक सेलून है जहाँ पर रोजाना कई लोगों के बाल काटे जाते है यहाँ पर सारी सुविधाएँ उपलब्ध है।

यहाँ बड़े बच्चे और बूढ़े सब के लायक कपड़े मिलते है यहाँ पर सिम्पल कपड़े भी है और यहाँ पर प्रीमियम कपड़े भी दिए जाते है कस्टमर को--

यह एक नाई की दुकान है यहाँ पर लोग बाल कटवाने आया करते है यहाँ पर दिन भर मे लोग सेकड़ो गणी संख्या मे आ जाते है।